जिसके अंदर एक बड़ा सा फ्रिज है।

सामने येलो कलर के खंबे बने हैं।

यहां ब्लू कलर की नेट का बना हुआ।--

साइड में मिट्टी का कुछ पात्र रखा है।

जहाँ बहुत सारी फोर व्हीलर खड़ी हैं।

सामने सिल्वर कलर की गाड़ी रखी है फोर विलर ।

गेट लगे हैं एक एंट्री गेट है।

यहां पीछे अलमारी में कपड़े रखे हैं।

बाहर बहुत सारे लेडिस जेंट्स खड़े हैं।

सामने टेबल पर कुछ लाइट रखी है झूमर रखे हैं।

जेंट्स ने रेड कलर की शर्ट पहन रखी हैं तीन रेफ्रिजरेटर रखे हैं।

नीचे रेक में छोटे-छोटे डंबल्स रखे हैं।

बीच में लोहे के खंभे लगे हैं।

यहां सामने की दीवार व्हाइट कलर की पेंट करी हुई हैं।

इधर की दीवार पे भी फोटो फ्रेम लगी है जिसमें एक लेडिस जेंट्स की तस्वीर है।

यहां सामने ऑरेंज कलर का बोर्ड लगा है।

उसके आगे छोटे छोटे टीन सेट बहुत सारे बने हैं।

यहां व्हाइट कलर का हॉस्पिटल टाइप केबिन बना है जिसके साइड में लकड़ी की डेस्क लगी हुई हैं।

उसमें कुछ व्हाइट ब्राउन कलर के सामान रखे हैं।

यहां पर दो स्विमिंग पूल बने हैं।

साइड में बहुत सारे कपड़े सूख रहे हैं।

सामने विंडो में पर्दा लगा है।